देख सकते हो ओवर ब्रिज है और यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी तारी लगे हुए हैं बैल भी है बहुत सारे मोटर साइकिल भी हैं टैम्पू भी है और यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी हैं ट्रक बस सब है और ऊपर भी है ऊपर से गाड़ी भी गुजरती है।